किसी ने येलो कलर की शर्ट पहन रखी है। ब्लैक कलर की पैन्ट रखी है। खजुरी के पेड़ है।

उसमे बहोत ही अच्छा ख़ूबसूरत सी सजावट की है।

और यह मछलियां बेच रहा है। इसमें छोटी मछली बड़ी --

ये यहां पर पानी चल रहा है। पानी का झरना है।